मुझे यहां पर एक कपड़े की दुकान दिख रही है।

मुझे यहां पर एक फ्रिज दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर मेडिसिन दवाई दिखाई दे रही है मुझे यहां पर एक टेबल दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक पेट्रोलियम ट्रक दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक लेमन जूस दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है।

यह मंदिर धर्महरी श्री चित्रगुप्त मंदिर है।

मुझे यहां पर कांच के गेट दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर एक पानी का मग दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक दूल्हा और एक दुल्हन दिखाई दे रही है।